इस पिक्चर में एक पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और सामने एक पानी का पियाव भी बना हुआ है।

ये एक बैंक ऑफ बड़ोदा की ब्रांच है जहां पर एक टेबल पर लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है।

ये एक रोड की तस्वीर है जहां पर एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप --

पास बहुत सारे ऑटो रिक्शा खड़े हैं।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा--

सीढ़ियां भी बनी है जिस पे मार्बल लगा है।

ये एक खेत जैसा बना है जिसमें --

इस पिक्चर में एक बड़ा सा जिम दिखाई दे रहा है जहां पर--

दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस-पास बॉडीबिल्डर्स के फोटो भी लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक अअ बड़ा सा हॉल जैसा बना है जैसे कि यह कुछ ऑफिस या फिर स्टेशन की जगह हो--

और ब्लू कलर के बोर्ड लगे हैं जिस पे आगमन लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक मंदिर बना है और यह पहाड़ों का इलाका है जहां पर--

दिख रहा है लड़के ने हाथ में पानी की बॉटल भी ली है।

जिसके ऊपर वो लोग खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं।

आस-पास बैलूंस लगे हुए हैं।

जहां पर कुछ पेट्रोल की मशीनें लगी हैं।

जहां पर वोट भी डाले जाते हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है जो बहुत बड़ी है।

सामने एक बड़ा सा टी_वी लगा हैजिसमें मैच चल रहा है।

बाहर कुछ टू व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हैं जिन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और एक ईंटों का चबूतरा बना है जिसमें एक पौधा लगा हुआ दिख रहा है।